ओ बगल में कार्तिक जी का चित्र बना हुआ है भगवान के सामने बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

लोग खड़े हुए हैं इनके चहरे पे रंग लगा हुआ है इनके कपडे पे भी रंग लगा हुआ है इसके पीछे एक बिल्डिंग है जो सफ़ेद रंग की है उसके पीछे भी पेड़ है जो हरे रंग की पत्तियां है।

और कुछ कुर्सी पे बैठे हुए है एक बगल में बैंड बजा रहा है ऊपर के साइड पे बहुत सरे गुब्बारे लटके हुए है और पर्दा लगा हुआ है जो पर्दे के ऊपर स्टार बना हुआ है।

एक आदमी मछली बेच रहा है जो सफ़ेद रंग की मछली है बहोत सारी मछली रखी हुई है उसके बगल पे भी मछली बेच रहे हैं जो बहोत सारी मछली रखे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।